पेड़ दिखाई दे रहे हैं बोर्ड लगा हुआ दिखाइ दे रहा है जोकि काला कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है। नीचे दुकान दिखाई दे रही है। बोर्ड नीले रंग का दिखाई दे रहा है।

बोर्ड पर एस.बी.आई लगा हुआ दिखाई दे रहा है। दुकान में कुछ सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पुलिया का रंग सफेद दिखाई दे रहा है। सड़क पर तीन गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं। गाड़ी का रंग सफेद दिखाई दे रहा है। एक गाड़ी आगे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है जिसका रंग सिल्वर दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक इस बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। काफी सारी बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। दो बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। बसों का रंग लाल और सफेद दिखाई दे रहा है। बस के पीछे चद्दर लगी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। आसमान का रंग सफेद दिखाई दे रहा है। एक लोहे का खंभा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

वहां पर एक स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेज पर टेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बोर्ड --

भी कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है जोकि सफ़ेद कलर की है स्पीकर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सुन्दर दिखाई दे रहे है। वहां पर छोटे-छोटे पौधे में लगे हुए हैं।

और यहाँ पर सफेद रंग की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो कि काफी सारी खड़ी हुई हैं। एक गाड़ी सिल्वर रंग की दिखाई दे रही है। पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे बक्से बहोत सारे रखे हुए दिखाई दे रहें हैं। आलमारी दिखाई दे रही है। आलमारी मे काफी सारे खाली दिखाई दे रहें हैं।

सारी सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर सब्जी दिखाई दे रही है। यहां पर नीचे आदमी बैठा हुआ है। उसके आगे एक पन्नी बिछी हुई है। उसने उसपर सब्जी रखी हुई दिखा --

यहाँ पर तपड़ी रखी हुई दिखाई दे रही है। कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

हरे रंग का कारपेट बिछा हुआ है तार दिखाई दे रहें हैं। एक स्पीकर रखा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि काले रंग --

यहाँ पर एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैक्टर काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।

ट्रैक्टर पेड़ की छांव में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पेड़ काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। नीचे सड़क दिख रही है। पाइप लगी हुई दिखाई दे रहे --

पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप भरने के लिए दो मशीनें रखी हुई दिखाई दे --

बिल्डिंग के ऊपर प्लस का साइन बनाया हुआ है। यह एक चर्च का फोटो दिखाई दे रहा है।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

यहाँ पर एक बगीचा दिखाई दे रही है सड़क दिखाई दे रही --

राजमा दिखाई दे रहा है। प्याज दिखाई दे रहे हैं और चम्मच भी रखी हुई दिखाई दे रही है।